दो तीन बस खड़ी हुई हैं। एक पीली वाली बस पे शताब्दी लिखा हुआ है और उसमें कोई नहीं है और लाल वाली बस में --

यह एक बस टैंड की तस्वीर है जहां काफ़ी सारी बस खड़ी हुई हैं। बस लाइन में लगी हुईं है और काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहें हैं। दुकाने भी दिख रहीं हैं। एक सपेद कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

यह एक फव्वारा लगा हुआ है जो काफी ऊपर तक जा रहा है। फव्वारे के आसपास काफी पानी गिरा हुआ है। फव्वारे का गोल कलर का आकार है और आसपास काफी हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

दुकाने बनी हुई है और कुछ हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं । आस पास एक इंसान भी बैठा हुआ है ।

यहाँ एक दूध फैक्ट्री है जिसका नाम गाव वाला मिल्क एण्ड ऑर्गैनिक फूड्स है बाहर बोर्ड पर --

बाहर एक मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है और आस पास काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं ।